यहां दृश्य ही काफी है अदभुत दृश्य है यहां दृश्य एक पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया का दृश्य दिख रहा है।